रेस्टोरेंट हैं और यहां पे तरह तरह के--

एक घर भी बना है और यह--

और यहां पे बहुत सारे लेबर हैं।

बाइक खड़ी है ट्राली खड़ी है बोरे पड़े हुए हैं और यहां पे पानी भी--

एक ऊपर पंछी भी बनी हुई है और यहां पे इधर उधर--

एक पानी वाला छोटा सा झरना भी बना हुआ है।

और यहां पे कुछ बोतले रखी है कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

दीवालों के पास कुछ पेड़ भी लगे हैं।

यहां पे ग्रोसरी के सामान मिलते हैं।

यहाँ पे दो व्यक्ति बैठ के बातें कर रहे हैं।

इस में तरह तरह की--

और यहां पे एक छोटा सा फव्वारा भी लगा हुआ है।

और दीवाल ज दीवालो पे भी लाइटे लगी हुई हैं।

झूमर भी लगे हुए हैं।

और बेड पे चादर तकिया रखे हुए हैं।

और यहाँ पे ईसाई घर है।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

रनिंग मशीन पे खड़ा होकर रनिंग कर रहा है।

रेड कलर का डिब्बा भी रखा फायर वाला रखा हुआ है।

और इसे ओपेन जिम भी बोलते है।

पेड़ भी लगे हैं और यहां पे घास भी लगे हुए--

गूगल पे का क्यू_आर कोड भी लगा हुआ है।

यहां एक पेट्रोल पंप है।

और यहां पे बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं।

पेड़ भी लगे हैं और यह एक--

और यहां पे छोटे छोटे घास भी लगे हुए हैं।

पीछे से रोशनी भी आ रही है।

और वो पहाड़ को पकड़ के--